मुझे इस फोटो में बहोत सारे झींगे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में कूड़ेदान दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस फोटो में कुछ इमारतें दिखाइ दे--

मुझे फोटो में कुआं दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस फोटो में दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में ट्रक दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में पहाड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में इमारत--

मुझे इस फोटो में लाइट दिख रही है।